वॉलपेपर से डिजाइन किया गया है जो कि बहुत ही आकर्षक है और दीवारों का रंग सफेद और--

यहां पर हम कुछ चर्च काल चर्च के लोगों को देख रहे हैं यानी ईसाई धर्म से संबंध रखने वाले लोगों को --]

उनकी आस्था और पूजा आराधना करते हुए देख रहे हैं ये एक बहुत ही सुंदर तरीके से --

मछलियों को तौलकर बेच सके और यहां पर उसके सांवले उसकी छोटी सी दुकान के सामने--

यूनिक तरीके से बहुत ही अच्छी सजावट की गई है दीवारों पर बहुत ही--

इस क्षेत्र में हम एक ऑटोमोबाइल रिपेयर शॉप देख रहे हैं जिसका नाम है कुलदीप ऑटो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिशियन --

दुकान का बोर्ड काफी बड़ा है जिसको का जो दुकान के ऊपर लगाया गया है ताकि यहां पर जो--

ये एक बस स्टैंड है जहां पर हम लोगों की भीड़ देख रहे हैं यहां पर यात्री अपने सामान के साथ आते हैं .]

और इधर से उधर दूसरे स्थान पर जाने के लिए बस का सफर करते हैं और बस पे देख सकते हैं बस के आसपास अब ये--

लोग चढ़ते उतरते नजर आ रहे हैं और बहुत सारी बसें यहां पर खड़ी हैं बस स्टैंड को हिंदी में बस अड्डा भी बोलते हैं.

यहां पर हम किसी प्रकार की एक मशीन देख रहे हैं जिसको कुछ लोग यहां पर ठीक कर रहे हैं यहां पर और--

बना रहे हैं और हम चित्र में देखें तो यहां पर ये मशीन बहुत ही बड़ी है.

यानी ये यहां पर सोडा वाटर बनाकर ये आदमी यहां पर बेचता है.

यहां दिए गए चित्र में हम एक बहुत बड़ा हॉल देख रहे हैं जो कि एक सरकारी दफ्तर का हॉल है.

और पूरा कब दफ्तर का जो सफेद रंग से रंगा गया है और दीवारों पर हमको बड़े बड़े नोटिस बोर्ड नजर आ रहे हैं।

और बोर्ड भी लगा हुआ है और लोगों दोनों तरफ हमको बड़े-बड़े कमरे नजर आ रहे हैं जो कि किसी प्रकार का --

दफ्तर हो सकते हैं और यहां पर उनको कोई भी--

यहां पर ग्राहक बैठे हैं और अपना हेयर कट करवा रहे हैं करवाते हुए नजर आ रहे हैं और यहां--

है जो एक साथ तीन पेड़ लगे है और यहां पर बहोत सारे और भी पौधे--

और हरी भरी घास है बड़े-बड़े पेड़ भी है।

और यहां पर जो घर या इमारत जो भी है उसका रंग नीले रंग से किया गया है और उसके बगल में--

यानी ये पीटर इंग्लैंड ब्रांड की कमीजें हम देख सकते हैंजो कि अलमारियों में सामने --

लगाई गई है और अलग-अलग आकर्षक रंगों में रंगबिरंगी कमीजें रखी गई है।

और डस्टबिन भी रखा हुआ है और एक पेड़ पर हमको लाल रंग के फूल भी उगे हुए --

हम यहां पर एक हैंडबैग की दुकान देख रहे हैं यहां पर हमको बहुत सारे अ पर्स और हैंड बैग और स्कूल बैग सब तरह के बैग में यहां पर --

बहुत ही आकर्षक इसका इंटीरियर डेकोरेशन किया गया है।

मशीनें नजर आ रही है जैसे कि ट्रेडमिल ट्रेडमिल में लोग रनिंग या भाग वॉक कर--

है वहां पर ट्रेडमिल में हम अपनी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं चाहे हम चलना चाहे तो चल भी--